इस तस्वीर में एक मैट दिख रहा है जिसका रंग ऑरेंज है।

इस फोटो में सब लोग काम कर रहे हैं।

इस फोटो में तीन बसें दिखाई दे रही है जिनका रंग व्हाइट ग्रीन वाइट एंड रेड में है।

इस तस्वीर में दो तीन ई रिक्शा भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में सूखे सूखे पेड़ के टहनी दिख रही है जो नीचे रखे हुए हैं।

इस फोटो में कई गेट भी नजर आ रही है।

इस फोटो में त्रिशूल भी नजर आ रही है।

इस फोटो में येलो कलर के तेल का बॉटल भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में रोड दिख रहा है।

इस तस्वीर में अन्य अन्य प्रकार की तोते दिख रही है जिसका रंग व्हाइट में येलो है और ग्रीन में है। उम्

एक फैक्ट्री का फोटो है।

इस फोटो में बहुत मिट्टियां दिख रही है।

इस फोटो में एक बाइक नजर आ रही है जिसका कंपनी स्प्लेंडर है।

इस छवि में दो पोखरी नजर आ रहे हैं।

इस छवि में बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस छवि में वो पोखरी का रंग हरा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में दो पंखे दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक स्विमिंग पूल की है।

इस छवि में बहुत हरियाली नजर आ रही है।

इस फोटो पर एक पोस्टर हैं जिस पर हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस एवरी टाइम लिखा है।

इस फोटो में गाड़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में बहुत सारे कलम दिख रहे हैं।

इस छवि में बहोत सारे किताबें दिख रहे हैं।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

इस तस्वीर में रेलवे ट्रैक भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक छोटा सा रिवर है।